यहाँ कुछ योजनाओं के बारे मे बताया जाता है शायद बहुत बड़ी मंच है।

यह एक पुराना मंदिर लग रहा है शायद मंदिर ही है या खंडर भी हो सकता है यहाँ पर घास भी दिख रही है चलने के लिए छोटी सी पैदल वाली रस्ता दिख रही है जहां कुछ आदमी भी दिख रहे है।

दोनों तरफ की दिवाले दिख रही हैं जो कई सालों से पुत्ती नहीं हुई हैं उस पर काई लगी हुई है ऊपर आसमान दिख रहा है यह सवेरे का समय है शायद दोपहर का भी हो सकता है।